चित्र में मुझे स्टेट बैंक ए_टी_एम दिख रहा है।

चित्र में मुझे तालाब दिखाई दे रही है चित्र में मुझे कई सारे पेड़ दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे फूलों के पौधे लगे हुए खेत पर दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे एक व्यक्ति बात करते दिख रहा है।

चित्र में मुझे एक इस्टेशन दिख रहा है चित्र में मुझे--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

चित्र में मुझे सरिया डली हुई दिख रही है।

चित्र में मुझे कई लोग खड़े और बैठे दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे पुल के नीचे खड़े हुए कई सारे लोग दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे एक शॉप दिखाई दे रही हैं।

चित्र में मुझे एक बॉटल रखा हुआ दिख रहा है।

चित्र में मुझे फ्लावर डेकोरेशन दिखाई दे रहा है।

चित्र में मैं बिल्डिंग पे पंजाब नेशनल बैंक दिख रहा है।

चित्र में मुझे शॉप का नाम नटराज इन रेस्टोरेंट दिख रहा है।

चित्र में मुझे और एक शॉप पे लगा माला--

लड़कियां क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रही है।

चित्र में मुझे भगवान की मूर्ति और कई सारे कलश रखे हुए दिख रहे है।

चित्र में मुझे कई गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है।

चित्र में मुझे कई सारी वायरें दिख रही हैं।

चित्र में मुझे लकड़ी के बैठा हुआ मोर दिखाई दे रहा है।

दे रहा है। चित्र में मुझे पेड़ दिखाई--